बिस्तर का ऊपर में बैग रखे हैं।

ये फोटो में आगे में दो चेयर लाल कलर का है।

यहाँ में तीन सोफा भी है।

यहां में फोटो का राइट साइड में एक ताला भी है।

बिल्डिंग का अंदर का है इसका रूफ में लोहा पाइप और लाइट लो भी लगा के हैं।

ये घर का गेट का ऊपर में प्रणाम भी लिखा हुआ है।

ये फोटो एक माल का अंदर का है जिसमें बहुत सारा कपड़ा लोग है लड़की लोग का।

आगे तरफ में आदमी का पुतला लोग भी है।

पेड़ का नीचे में नदी भी है।

एक ठो बाइक भी खड़ा करके है और उसका बाइक का आगे तरफ में एक पोस पोस्ट भी है जस्ट आगे में।

एक दुकान है जिसमे एम_एस होम शॉपिंग लिख के है।

दुकान का दरवाजा में ताला लोग भी लगाया हुआ है।

यहां में सीट का ऊपर साइड भी दिखाई दे रहा है।

इसमें पेड़ भी तंगा के बनाके है।

साइड में ही दो पुलिस वाला दिखाई दे रहा है।